सामने तीन कुर्सियां लगी दो कुर्सियां लगी हुई है तीन शीशे लगे हुई है एक कुर्सी इधर साइड में और लगी हुई है।

इधर भी बहोत सारे टेबल लगी दिखाई दे रही है कुछ आदमी खड़े हैं कुछ पिज़्ज़ा खा रहे हैं कुछ-कुछ खा रहे हैं।

नीचे आपस मे पर कुछ व्हाइट व्हाइट कुछ रखा है ऊपर से कुछ या वाइर कुछ रखा गया है ऊपर बादल भी दिखाई दे रहा है वाइट कलर के बादल दिखाई दे रहे हैं।

इधर पीछे और भी कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं इधर पास में छोटे छोटे पेड़ हैं दो बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और उसमे अलग अलग चिकन का डिश का फोटो भी दिया हुआ है पीछे में पेड़ दिखाई दे रहा है एक गैलरी भी दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी का तस्वीर है और उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ भगवान का चाहे कुछ तस्वीर दिखाई दे रहा है।

अलग अलग कलर का अलग अलग डिजाइन का स्कूटी दिखाई दे रहा है बहोत ही अच्छा स्कूटी दिखाई दे रहा है उधर आगे भी चार स्कूटी खड़ा है उधर पीछे में दो उधर पीछे में चार स्कूटी खड़ा है।

बहोत स्टेज को बहोत ही अच्छी तरीके से सजाया गया बहोत ही अच्छा स्टेज दिख रहा है और सामने इधर सीट कुर्सियां लगी हुई है उनपे आदमी बैठे हुए हैं।

वो आदमी का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है उसके ब उसके पास में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा वो कोने में उसका थोड़ा सा चेहरा चेहरा दिखाई दे रहा है।

उधर एक पोल भी लगा हुआ है उधर एक दीवार भी बना हुआ है पीछे में उधर एक घर सा बना कुछ दिखाई दे रहा है उधर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

लगे हुई है उसके पीछे में एक पेड़ बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है उसके आगे --

इधर भी पीछे में भी एक टेबल रखा हुआ है गोल वाला उसके भी चारों ओर दोनों तीर तीनों साइड कुर्सी लगी हुई है।